यहां एक ब्रिज बना है जो ब्रिज के ऊपर कारे जा रही हैं। निकल के और एक आदमी बाइक पर बैठा हुआ हैं और एक --

और यहां से यात्री आते हैं जाते दिखाई दे रहे हैं।

जगह का व्यू है जहाँ पर लोग जाते और आते हुए दिखाई दे रहे है जहाँ पर सामने नदी है जहाँ पर --

किराने की शॉप भी है ये जगह खाली है जहा अगल-बगल बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

यहाँ अगल-बगल हरियाली टाइप की और यहां पर बतख बैठे हुए हैं और यहाँ पर एक जगह पानी सा भरा --

ओरेंज कलर का वस्त्र ओढ़े हुए हैं और ये सब पे प्रणाम करते हुए दिखाई दे रहे हैं अगल-बगल बहुत सारे पेड़ और हरियाली दिख रही है।

कलर की बिल अ सफ़ेद कलर की बिल्डिंग बनी हुई है जो ब्लू कलर से रेड या ब्लू कलर का गेट बना हुआ है और ब्लू कलर से ही पोस्टर लिखा है ये केनरा बैंक की बिल्डिंग है ये केनरा बैंक लिखा हुआ है।

यहाँ एक बस खड़ी हुई है जो सफ़ेद कलर की है और यहां पर एक पेड़ भी दिख रहा है सफेद कलर की है और --

नदी का सीन है। जहां पर तीन नाव नजर आ रहे हैं।